और नीचे स्टाइल है पूरा क्लीनेस है।

और एक साइड में ब्ल्यू कलर टी शर्ट का कोई आदमी खड़ा हुआ है एक साइड में रेड वाला खड़ा हुआ है।

अ भगवे कपड़े से फोल्ड किया हुआ है उसके साइड में एक स्लाइड खड़ी हुई है।

एक अ जिम खाना है उसमें कुछ मशीनरी हैं एक आदमी आगे ले--